मार्केट दिखाई दे रहा है जिसमें एक टेंपो और एक गाड़ी दिखाई दे रहा है | इसके आगे मे कुछ बच्चे हैं जो की गाड़ी में बैठने के लिए जा रहे हैं | एक व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ है और एक और एक व्यक्ति गाड़ी के ड्राइवर से कुछ पूछ रहा है ।

इस फोटो में एक महिला व्हाइट कलर की कुर्ती पहेन के खड़ा है जो की एक स्कूल का हॉल है।

फोटो में एक लड़का खड़ा है जिसने टोपी पहना हुआ है और उसने व्हाइट कलर का टी शर्ट पहना हुआ है ब्लू कलर का जींस पहना हुआ है और नीचे में चप्पल पहना हुआ है इसके--।